जो प्लेन का कलर है वो व्हाइट और रेड कलर का है।

और इस दृश्य में एक सर भी नजर आ रहे हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं।

और इस रेस्टोरेंट का कलर दीवार का कलर व्हाइट है और नीचे टाइल्स लगा हुआ है।

इस दृश्य में एक व्यक्ति नजर आ रहे हैं।

और इस दृश्य का दीवार का कलर व्हाइट है और इस दृश्य का दीवार के ऊपर करकट लगा हुआ है।

इस दृश्य में एक बहुत बड़ा डैम दिखाई दे रहा है।

और इस दृश्य में एक बस भी नज़र आ रहा है।

और इस दृश्य का बिल्डिंग का कलर पीला पीला और व्हाइट है और बस का कलर भी पीला है।

और इस दृश्य में बहुत सारे पेड़ पौधें भी नजर आ रहे हैं।

और सारे लोग अलग-अलग कपड़े पहने हुए हैं।

और इस दृश्य मे सारे महिलाएं एक ही कलर के कपड़ा पहने हुए है।

और इस दृश्य में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।

सारे व्यक्ति अलग अलग कपड़े पहने हुए हैं और एक व्यक्ति महाराजा की कुर्सी पर बैठा हुआ है।

ये व्यक्ति नजर आ रहे हैं और सारे व्यक्ति होली खेले हुए हैं।

और इस दृश्य के किनारे बहुत सारे पेड़ पौधा भाई है।

और सारे लोग अलग अलग कपड़े पहने हुए हैं।

और इस दृश्य में एक आदमी का चित्र भी दिखाई दे रहा है।